और घुमटा भी टंगा हुआ है चारों साइड से लाइट लगा हुआ है दिखने में काफी ज्यादा सूंदर लग रहा है क्यूंकि बहुत बढ़िया है और पूजा-पाठ हो रहा है।

और माल सब देखने मे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बहुत ही आ--

हमको यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर दिखा है जो की देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।

देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत सारा आदमी पूजा कर रहा है माँ दुर्गा का जो की बहुत सारा मूर्ति बना हुआ है देखने में काफी ज्यादा सुन्दर लग रहा है।